इसमें बहुत सारी तारे गयी हुई है सामने से एक रोड लगी हुई है और बाजु से नाली भी है और ये शाम का वक्त है।

और नीचे दामा रोड में हल्का सा कहीं पानी भरा हुआ है और ये बारिश का समय लग रहा है |

एक स्कूटी खड़ी हुई है कार काले कलर और एक बाइक खड़ी हुई है और लोहे वाले दरवाजे से दो पल्ले का दरवाजे --

यहां तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है चिपक के बनी हुई है और बीच वाली बिल्डिंग में एक बाइक खड़ी हुई है।

मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके आर साइड में पत्त्थर की चट्टानें से लग रही है सामने पानी भरा है।

अंदर मंदिर दिखाई दे रहा है जिसकी डिसीजन तीन बानी हुआ है ओर साइड में बड़े बड़े चौड़े प् --

और पीछे साइड एक चादर रखा लगा हुआ है जो टेंट का है और एक काउ सोफा रखा हुआ है।

अंदर कुछ व्यक्ति दिख रहे है और साइड में कुछ ला आआ हरी सी लाइट जल रही है और ये रात का समय है और अंदर कुछ लाल लाइट दिख रही --